ये एक विद्यालय है और यहाँ पर विद्यालय में लोग अपने बच्चो का भविष्य बनाने के लिए यहाँ पे --

यहाँ पे क्रिकेट में एक प्लयेर में एक --

पछ में गेरा प्लयेर होते और पूर्ण रूप से पन्द्रह प्लयेर होते हैं।

यहाँ पे कुछ लोग आराम कर रहे हैं।

ये मित्रो क्या आप भी लाइक करते हैं।

शायद बंधन बैंक का ए.टी.एम. है और कोटक महिंद्रा बैंक --

दोनों ही बैंक हैं। बैंको की बिल्डिंग दिख रही हैं। यहाँ पर बैंक में ए.टी.एम. से अपने पैसे लोग निकालते हैं।

ये फूलों की लरी है और यहाँ ये --

ये नजर आ रहा है।